हमें यहां चित्र में एक जिम दिखाई दे रहा है।

यहां हमें काफी सारी गाड़ियां वगैरे पार्क की हुई दिख रही है।

यहां पर हमें रेडियो वगैरे दिख रहे है मिक्सी भी हमें दिखाई दे रही है।

दोनों साइड में हमें तीन लेडिस दिख रही हैं।